और इसमें एक रेड और ब्लू कलर की जो गाड़ियाँ है वो इलेक्ट्रॉनिक वाली स्कूटी है।

ये एक देशी स्वाद रेस्टोरेंट है एंड फ़ूड लाउन्ज है जहाँ पे दो बाइक्स खड़ी हुई है।

राईट साइड में हरी -हरी घास है और इस साइड में पेड़ भी लगे हुए है।

जोकि एक बिल्डिंग के सामने एक कार खड़ी हुई है वाइट कलर की जिसके आगे और पिछले दोनों दरवाजे खुले हुए है।